इसमें बहुत सारे झंडे लग गए हैं और रेड कलर किया गया है।

जिसमें ब्राउन कलर हैं नीले कलर हैं येलो कलर हैं और रेड कलर की हैं।

यहां पे बहोत बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं बड़ी-बड़ी बिल्डिंगस हैऔर उसके ऊपर से चोटीदार और टंकी बनाई गई है।

बैनर्स जो है इसमें प्रधानमंत्री जी की एक फोटो लगी गई है जिसमें लिखा गया है प्रधानमंत्री जैविक खेती।

और कुछ लोहे की फिसल पट्टी भी दिखाई दे रही है।

कुछ टीने दिखाई दे रही है जो की व्हाइट कलर की और जालीदार बनाया गया है।